बहुत सारे ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारे छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ी इमारत है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी खिड़कियां लगी हुई हैं।

यहां पर बोहोत सारे पेड़ रखे हुए हैं जो कि गमलों में हैं। इसमें ग्रीन कलर के पेड़ हैं।

यहां बड़ा सा स्टेज है यहां पर बहोत सारी लाइट जल रही है।

यहां पर व्हाइट और ब्लू कलर की नीचे मैटी बिछी हुई है दूसरे साइड में पर्दे पड़ा हुआ है जो ग्रीन कलर का है।

सामने एक केबिल गया है जो ब्लैक कलर का है।

यहां पर खंभे लगे हुए हैं दूसरी साइड में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन के कलर के हैं दूसरे साइड में बहुत सारे घर बने हुए हैं।

बड़ी गाड़ी वाइट कलर की है।

दूसरे साइड में एक रेड गाड़ी खड़ी हुई है।

जो ऑरेंज और वाइट और ग्रीन कलर से पेंट हुआ है।

यहां पर ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

दूसरे साइड में एक छोटा सा गमला रखा है।

यहां पर आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

यहां पर बहोत सारी लड़कियां खड़ी हुई है।

सामने बहुत सारे चमड़े पेर लगे हुए है जो ग्रीन कलर के है।

ये दूसरे साइड में बहुत सारे डिजाइन बने हैं।

यहां पर बहोत सारी जमीन में पत्ते गिरे हुए हैं सुके।

उसके सामने बड़े बड़े लोहे के खंभे लगे हुए हैं।

यहां जमीन में बहुत सारी ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर जमीन में बहोत सारी ग्रीन कलर की घास उगी हुई है।

यहां पर बोहोत सारे तार आए हुई --

मॉल है इसमें बहुत सारे औरत और आदमी खड़े हुए हैं।

वे लगे हैं जिस पर बहुत सारी जाली वाली पन्नी पड़ी हुई है।

इसमें बहुत सारे आदमी और औरतें टहल रही हैं।

सामने एक बड़ा सा स्टैचू लगा है।

एक छोटा सा मशीन रखी है।

सामने एक बड़ा सा स्टैच्यू लगा है।

लगे हुए हैं यहां पर दूसरे साइड में भी बहुत सारी बाल्टियां रखी है।